भगवान हनुमान जी का जय बालाजी सरकार का मंदिर है मंदिर में भगवान--

हनुमान जी बैठे हुए हैं और यहाँ पे कांच मास्टर ने बहुत बढ़िया तरीके से कांच को सजाया हुआ है जय श्रीराम।

ये पान दिख रहा है यहाँ पे या तो मस्त रूम सन दिख रहा है मस्त रूम पर लाइट लगी हुई है मस्त लाइट लगी हुए है यहाँ पे और नीचे फर्श भी चमकता हुआ दिख रहा हर चीज व्यवस्थित रखी हुई है यहाँ पे --

झरना है झरना एक स्वच्छ जल माना जाता हैं जो पीने योग्य होता है स्वक्छ जल एक व्यक्ति बैठा हुआ है।

साड़ी का शोरूम है और उसपे लिखा है जबरजंद एंड कंपनी फैंसी साड़ी डिजाइनर वैवाहिक साड़ी के स्पेशलिस्ट --